यह एयरटेल की एक शॉप है जो की।

ऑथराइज्ड है यहां पर।

जो की स्मार्ट फिफ्टी के द्वारा आयोजित किया गया था यह कोलकाता में ही।

चारो तरफ बहुत ही सुन्दर पेड़ पौधे लगे हुए है जो इसकी सुनदरता को और भी बड़ा रहे हैं।

रास्ते पे हमे साबधानी पूर्वक चलनि चाई चलना चाहिये इस चित्र में--

एरिया बोहोत ही हीइइ ठीक चलने वाला यातायात का साधन है |